यह एक शॉप है जिसके अंदर कुछ लाइटे और पंखे चल रहे है और कुछ टेबल लगे हुए है और कुछ कुर्सियां भी लगी हुई है।

यह एक मंदिर है जिसके अंदर एक घंटी टंगी हुई है और दीवार पर कुछ भगवान की पिक्चर्स लगी हुई है।

रंगोली भी परी हुई है और जिसमें की कुछ--

यह एक मशीन है जो कि प्रिंटर मशीन है जो कि अखबार वगैरह निकालने के काम आती है और इसके ऊपर --

टिन के ऊपर व्हाइट पेंट किया हुआ है और एक मेज़ बैठने के लिए दिखाई दे रहा है।

पत्थर है और आसमान साफ दिखाई दे रहा है और कुछ लाइट की तारें निकली हुईं है।

यह एक शॉप है जिसके अंदर बहुत सारा सामान अलमारी के अंदर पड़ा हुआ है।

और इसके आगे एक कांच का शीशा भी लगा हुआ है और इसके अंदर बहोत सारे --

यह एक शॉप है जिसके पीछे कुछ सीसे दिखाई दे रहे है और एक लड़का सेल्फी ले रहा --

दरवाजाज व्हाइट कलर का है जिसके आगे एक लाइट भी जल रही है और आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

यह एक लड़की के बाल हैं जिसका जुड़ा किया हुआ है और लाल--